घर के चारों ओर हरियाली ही हरियाली भरी हुई है।

पीछे सफेद आसमान देखा जा सकता है।

यहां बाहर में कुछ लोग देखे जा सकते हैं।

यह एक हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य है।

अनेको लोग सफेद रंग का पोषक पहने बैठे हैं।

जहां साइड में एक गिटार रखा है।

पेट्रोल पंप के अंदर दो तीन लोहड़ी भी देखी जा सकती है पेट्रोल पंप के बाहर नीला और येलो का--

यहां पे कुछ लोग दिख सकते हैं।